यह एक ज्वेलरी शॉप है।

यहां पर बहुत सारे आदमी बैठे हुए हैं।

सामने में एक काठ का कुर्सी बनाया गया है।

को बहुत बढ़िया डिजाइन किया गया हैं।

और सामने में एक साइकिल भी दिखाई दे रहा है।

इस दुकान के साइड में एक और दुकान दिखाई दे रहा है।

उसके बगल में एक मीटर लगा हुआ है।

सामने अलमारी में बहुत सारी क्रीम रखे हुए हैं।

ऊपर में भी बहुत सारे पुतले हैं इसमें से कुछ बच्चे की और कुछ महिला के और कुछ पुरुष के दिखाई दे रहे हैं।

इसमें से कुछ पानी की बोतल और कुछ ठंडे के बोतल दिखाई दे रहे हैं।

सामने में एक आदमी खड़ा दिखाई दे रहा है।

सामने में एक लोटा भी रखा गया है।

यहां सामने मे एक झरना का चित्र दिखाई दे रहा है।

सामने में कुछ आदमी दिखाई दे रहे हैं।

सामने में बहुत सारे टेडी बीयर रखे हुए हैं।

ऊपर में कुछ लाइट भी लगी हुई हैं।

बहुत सारे कपड़े कार्टून में भरे हुए हैं।

कुछ नीचे भी रखे हुए है।

रेस्टोरेंट को लकड़ी से बनाया गया है।

गेट के सामने भी एक सफेद कलर का घर दिखाई दे रहा है।

यहां पर कुछ महिलाएं दिखाई दे रही है।

यहां पर बहुत सारे प्लास्टिक के कुर्सी और टेबल लगे हुए हैं।

टेबल के ए ऊपर एक नमक का डब्बा भी रखा हुआ है ।

यहां सामने में बहुत सारी गाड़ियां दिखाई दे रही है।

सामने में एक खंभा दिखाई दे रहा है जिसमें कुछ बल्ब लगे हुए हैं।

यह एक कपड़े की दुकान है।

सामने मे एक डॉक्टर बैठा हुआ है।

यहां सामने में चार आदमी बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं।